ये एक शॉप है अमूल डेयरी वाला शॉप जो इसमें अमूल के आइसक्रीम अमूल के बिस्कुट ओरियो वगैरा सभी प्रकार के --

ये पानी का तालाब है तलाब बहोत ही गहरा है और तालाब में पानी बहोत साफ दिखाई दे रहा है और पास में पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहें --

तथा ऊपर बादल बहोत ही सुंदर छाए हुए हैं बहोत ही अच्छे दिखा रहा बादल पानी के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ों की हरियाली पानी के अंदर दिखाई दे रही है।

झोपड़ी सी बनाई हुई है सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे यहां पर झोपड़े जैसा घर बनाए हुए हैं।

जो भी इस तरह देता है ओ खत्म हो जाता है यहां पर बच्चे वगैरा लेने के जगह है और पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा --

डिब्बियों में सामान रखे हुए है दिखाई दे है और इनमें अलग अलग प्रकार के डिब्बे रखें है इसमें सामान अलग अलग प्रकार से रखा हुआ --

बैठने के लिए पायदान बना रहे है और यहां पर लकड़ी की टेबल लकड़ी की कुर्सी पड़ी एक बच्ची दिखाई दे रही है।

पीछे ग्रीन -ग्रीन दिखाई दे रह है हरियाली सी--

और यहां पर पानी के मटके रखे हुए हैं और पास में एक बड़ा सा पेड़ है पेड़ बहुत ही हर भरा है और मैदान खुला है।

रखी है लोशन बॉडी लोशन वैक्स सभी प्रकार के फेशियल वगैरा रखे हुए हैं।

और बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए है आगे का एरिया बहुत ही सुंदर है यहां पर ट्यूब लगी हुई है।

ये एक शॉप है शॉप के अंदर सभी प्रकार के सामान मिलते हैं यहां पर लोशन बॉडी लोशन क्रीम बिस्कुट

सभी प्रकार के खाने के आइटम भी मिलते हैं यहां पर लोशन वगैरह भी मिलते हैं साबुन तेल क्रीम सभी प्रकार के --

ये एक शॉप है लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से यहां पर कूलर फ्रिज सभी प्रकार के सामान मिलते हैं टी_वी --

यह एक पहाड़ी एरिया जैसा प्रतीत हो रहा है यहां पर चट्टानें जैसी दिखाई दे रही है मोटे मोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कच्चे यहां पर कुछ कच्चे घर जैसे दिखाई दे रही है ये पुराना विद्यालय की बिल्डिंग है यहां पर एक टीचर खड़ा हुआ --